यह क्रिश्चियन है यहां यह बहुत अच्छा है यहां पर लोग सब घूमते हैं और प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छे हैं की लाल रंग से रंगा हुआ है यहां बहुत अच्छे हैं वो पांच तल्ला भी है।